उसका सामने पिक्चर में बहुत सारा गच्ची ये सब ग्रीन ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है।

टीना जो ब्लू कलर का है।

और उसका सामने का ऊपर में गोल गोल वाला डिजाइन ।

उधर दुकान का ऊपर में लिखा है बस्तर डेरी फार्म ।

दुकान के अंदर बहोत सारा चिप्स दिखाई दे रहा हैं और फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

इमेज में एक नदी को दिखाया गया है जो की फ्रेश फ्रेश है।

ये पिक्चर में जिम का वॉल कलर रेड और ब्लैक है।

ये लड़का जो ब्राउन ब्राउन कलर का हुंडी पहना है।

रेस्टोरेंट का कलर जो व्हाइट और ब्ल्यू है।

एक इंसान का माध माथा दिखाई दे रहा है आधा वो भी वॉल मे एक स्विच बोर्ड भी है।

और ये भी है ये में कनक चावल है क्या।

रस्ता है रस्ता में तीन इंसान जा रहा है।

यहां स्टूडेंट और टीचर दिखाई दे रहा है।

टीचर जो साड़ी पहना हुआ है उन लोग का शक्ल को ब्लर कर दिया गया।

में एक साइन बोर्ड है उसमें लिखा है।

आगे में दो पेड़ पौधा दो है।

ये जो पोल्स है उसका में एक ब्रीजर करके बड़ा सा लिखा हुआ है।

ए जो वॉल है वॉल में जीसस का स्टेचू है।